ये पंजाब नेशनल बैंक है जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि एक अंकल अपने साइड में या हाथ में सूटकेस लेकर अंदर जा रहे हैं और दो बाइक भी खड़ी हैं और एक कार का टायर भी आ रहा है।

और यहां पे ग्रिन्डर के सामने एक ब्लू कलर की एक पिन्नी रखी हुयी है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है और लोग जो है वो लेटा हुआ है उसके ऊपर खिड़की जो है वो काँच की है उसके ऊपर एक ट्यूब लाइट भी है।

यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कलर का एक ई रिक्शा आगे जा रहा है उसके पीछे रेड और ब्लू कलर की दो रिक्शा है कुछ लोग यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पे देखिए जैसे एक गाड़ी एक ही गाड़ी दिखाई दे रही है जो कि वाइट कलर की है उधर जा रही है।

ये एक जब रोड के सेकेंड साइड की फोटो है जहां पे दिखाई दे रहा है कि हमें कुछ रिक्शा वाले हैं कुछ बाइक वाले हैं कुछ कुछ उसमें गाडियां भी खड़ी हैं और रेड कलर से कुछ दिवाल पे लिखा हुआ भी है और_ _

यल्लो कलर से भी लिखा है कुछ ग्रीन कलर से लिखा हुआ है और सामने एसबीआई का एटीएम भी है जिसमें कि यलो यलो कलर की स्ट्रिप --

और उसके आगे देखें तो कुछ बाइक खड़ी हुयी हैं जिसमें दो व्हाइट कलर की एक ये ब्राउन कलर की एक ब्लैक कलर की बाइक भी है और एक आगे रेड कलर की भी बाइक है एक आदमी खड़ा हुआ है और ऊपर उसके ए.सी. लगा हुआ --

यहां पे दिखाई दे रहा है की यहाँ पे एक ग्राउंड है जिसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए है और रेड कलर की एक दीवाल है जिसका पेण्ट छूट रहा है और एक हट बानी हुयी उसके अंदर --